बगल में भगवान शंकर अन्य देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं पूजा से सम्बंधित सामग्री बेचने वाले लोग दिखाई दे रहे है।

एक व्यक्ति बैठ कर अज बच्चों के पूछताछ कर का रजिस्ट्रेशन कर रहा है |

यह कोई बड़ा सा पार्क है या कोई सुंदर सा गार्डन जिसमें एक बड़ा अच्छा दरवाजा बनाया गया है।

ये पूरी तरह व्यवस्था पर दिखाई दे रहे हैं बगल में बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई कंपनी का ऑफिस कह सकते है एक से दो गाड़ियाँ --

जा रही है आने-जाने के लिए अलग लाइने हैं और बगल में कुछ गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं और सामने एक बहुत बड़ी बोर्ड गड़ी होती है एक हाइवे हो सकता है |

चार पांच व्यक्ति नाव पर बैठे हैं नदी पार कर रहे हैं।

एक रेस्टोरेंट में है जिसमें दो कुर्सियाँ लगे हैं और दोनों कुर्सी और टेबल पे दो-दो व्यक्ति बैटें हुए हैं।